तीन चार लोग इधर आपस में बात कर रहे हैं।

और पीछे शीशे की तरह लाइटें भी लगी हुई हैं।

इसमें फोटो में एक घर के आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और एक आंटी जी मछली खरीद रही है वो अपने पर्स में से शायद पैसे निकाल रही है।

और इधर कुछ मशीनें भी पड़ी हुई हैं।

और पीछे ये नीम का पेड़ हैं उसके उधर खेत वगैरा हैं जोकि देखने में बहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इधर एक इट वाला घर भी है।

के आगे बहोत सारी मोटरसाइकिले भी लगी हुई हैं और कार भी जा रही है।

जोकि देखने में बहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा हैं।

जो की सामने में एक खंबा गड़ा हुआ है।

और उधर पीछे एक बहोत बड़ा सा ईंटे वाला छत है जिसपे एक बंदा खड़ा हुआ है।

और इसका घर एकदम देखने में भाई बहुत बढ़िया लग रहा है।

ये एक पेट्रोल पंप का फोटो है जोकि रोड के किनारे में है।

और कुत्ता के पीछे एक मोटरसाइकिल भी लगा हुआ है उसके पीछे भी--

और एक बुढ़िया आंटी उनके पीछे बैठी हुई है।

और इधर बगल में एक अंकल मास्क पहन के खड़े हुए हैं।

पीछे में दो खिड़कियां हैं ऊपर में पंखे हैं दो हैं।

एक बंदा ऐसी खड़ा है और कुछ बरतने पड़ी हुई है।

और उसके उपर एक शीशा लगा हुआ है शीशे के में उपर में झंडा है।

और दो तीन लोग इधर साइड में बैठे हुए हैं।

और पंखे भी लगे हुए हैं और दीवाल पे--

एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई है और छत पे लाइटें भी बहोत सुंदर लग रही है देखने में--

और उधर साइड में एक झोपडी सा बना हुआ है जिसके ऊपर--

टेबल पे क्यू_आर कोड भी रखा हुआ है और दो तीन मग भी है।

और ऊपर में लाइट भी है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।

ये पेट्रोल पंप है अभी कोई आदमी नहीं है एक इधर एक पीछे है।

इस फोटो में दो तीन दुकानें दिख रही हैं जो कि घर से ऊपर में--

एक मुर्गी फारम का फोटो है और बहोत सारी मुर्गीयाँ भी रखी हुई हैं।